पिक्चर में घर दिखाई दे रहा है उसके नीचे का फ्लोर दिखाई दे रहा है टाइल्स दिखाई दे रही है।

ऊपर का दिखाई दे रहा है एक स्टांप दिखाई दे रहा है उसपे झंडा लगा हुआ है ।

हम्म सबकुछ दिखाई दे रहा है झंडा लगा हुआ है एक ग्रीन कलर का।

और किसी जगह पर खड़े हुए हैं और एक ऑटो का दिखाई दे रहा है।

आइटों की दीवारे दिखाई दे रही हैं खिड़कियां दिखाई दे रही हैं खिड़की येल्लो और --

काँटों के बीच में पड़े हैं एक आदमी खड़ा हुआ है आगे कि तरफ एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है |

उसके ऊपर दो ऑटो खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर कलर का हैआगे शीसा लगा हुआ है। दो रेड --